चारो तरफ दिख रहे हैं जो बु --

यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह --

यहाँ पे धनिया के पत्ते रखे हुए है।